पनीर चाउमिन सब छोले भठूरे सब मिलते हैं |

और आते सामने एक टैंक है जो की यह टंकी में --

नहा रहे हैं नहर में बहुत बड़ा डैम है डैम से पानी गिर रहे है।

और यहाँ यहां सबको एक ड्रेस में बैठाए गए है।

तालाब के साइड में मार्केट एरिया है जो एक ताड़ का पेड़ दिख रहा यहाँ।

और उसमें कलर डालेंगे और फिर वह --